रोड पर लोहे की कुछ पाइप लगी हुई ही दिखाई दे रही है कुछ लाल रंग खंभे दिखाई दे रहे है रोड के आई साइड बिल्डिंग बगैर दिखाई दे रही है बिल्डिंग रोड पे कुछ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे है ।

जो वन दिखाई दे रहा है पीछे झाडी इलाका दिखाई दे रहा है और सामने कुछ जाली के डिज़ाइन दिखाई दे रही है और लोहे की खंभे दिखाई दे रहे है पत्थर

ये किसी साइट का काम करते हुए एक क्रेन दिखाई दे रही है सामने कुछ बुलडोज़र दिख रहा है जिसके अंदर कोई लोक लगा दिख रहा है नीचे टायर गोल दिखाई दे रहे है सामने कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे पत्थर की एक साइट दिखाई दे रही है जिसको बुलडोज़र से--

कैफ़े के अंदर का फोटू दिख रहा है जिसमे किचन का फोटू दिख रहा है जिसके अंदर कुछ मिक्सर और कुछ अ डब्बे रखे दिखाई दे रहे है जो स्टील के दिखाई दे रहे है उसमे ओ ऊपर ढक्कन लगे दिखाई दे रहे है नीचे कुछ नल दिखाई दे रहा है।

साइड मैं एक और ट्रैन जाती हुई दिखाई दे रही है उसके पास मैं कुछ आसमानी कलर की चेर बनी दिखाई दे रही हैं सामने एक व्यक्ति बेग और थैली लिए जा रहा हैं उसके ऊपर छज्जे के निचे ऊपर एक लाल कलर की घडी लगी दिख रही है जिसमे टाइम दिखाई दे रहा हैं पास मैं एक स्टील भी चेर हैं उसके

कुछ पिलर लगे दिखाई दे रहे है। उसके ऊपर फूल लगे दिखाई दे रहे है। नीचे जो स्टेज बना है। उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाला है। सामने के साइड में कुछ कपड़े और कुछ फूल डले हुए दिखाई दे रहे है। और राइट साइड में काला--

पत्थर से पिल्लर बनाया गया है दिख रहैं है इसमें से सलिये निकले हैं और निचे जो उमम ब्लॉक बने हुए हैं उसमे से पानी बहोत सारा निकल रहा हैं। सामने एक पिल्लर

इसमें कुछ पौधे लगे दिखाई दे रहा है कुछ जाली दिखाई दे रही है सामने एक बाइक खड़ी जिसके ऊपर हेलमेट रखा दिखाई दे रहा है अंदर के साइड कुछ कांच ओर कुछ पेड़ वो भी दिखाई दे रहा है बहार मै जो फूल लगे है।